और बहुत सारे लोग ईन टेम्पुओं में बैठे हुए हैं और कुछ व्यक्तियों का समान भी रखा हुआ है ।

और बहुत सारे लोग अपनी अपनी फोटो खिंचा रहे हैं और पीछे की ओर एक स्टेज भी बना हुआ है।